पास बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है टायर दिखाई दे रहा है पहाड़ दिखाई दे रहे है दिन का समय है है।

श्याम मंदिर की तस्वीर हैयहां पर दीवाल में टाइल्स लगवा दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत सारे फूल मालाएं दिखाए--

एस.बी.आई का पोस्टर दिखाई दे रहा है बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है सीढ़ी दिखाई दे रहा है घांस दिखाई दे रहा है रास्ता दिखाई दे रहा हैबाउंड्री वॉल दिखाई दे रहा है।